पांच पंखे लगे हुए हैं टी_वी है चेयर्स हैं एक बड़ा सा घर है।

यहां एक रूम है जहां दो बेड लगे हुए हैं बेड के ऊपर में दो--

और बैटों पे अं इंसान लोग सोए--

अह घड़ी वगैरा वाच वगैरा है बहोत सारी समान दिखाई देते हुए--

पानी में बहोत बड़ा तालाब है यहां एक नाव दिखाई दे रहा है जिसमें कई लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग पानी में अपना--

और एक कचडा बाल्टी नजर आ रहे है और पेट्रोल पम्प के पिछे एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहे हैं।

और यह कुछ लोहे से बना कुछ दिखाई दे रहा है।

यहाँ सीढ़ी दिए हुए है यहाँ ग्रिल्स दिए हुए है।

और बहोत बड़ा जगह नजर आ रहा है एक घर और नजर आ रहा है।

पेड़ नजर आ रही है एक पोस्टर लगा हुआ है जस्ट पीछे घर नजर आ रही है।

कुछ लोग बाद में कुछ लगाए हुवे है यहां पे खाना नजर आ रहा हैं यहां बोर्ड --

हम बड़े सा मैदान जैसे नज़र आ रहे है यहाँ पेड़ नज़र आ रही है यहाँ एक झिल्ली नज़र आ रही है।

बेड नजर आ रही है यहां पे बटंस लगी हुए है।

यहां पे भगवान नजर आ रहे हैं और तीन लोग नजर आ रहे हैं। जहां पे एक--

अरे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं यहां पे पेड़ नज़र आ रही हैं।

यहां पे छोटे छोटे पेड़ है यहां पे पत्थर में कुछ लगा हुआ है।

उं होटल के नीचे पेड़ बने हुए हैं खिड़की लगी हुई हैं।

यहां पर प्लेट्स रखे हुए हैं यहां--

लाइट्स लगी हुई है यहां पे खड्डे रखे हुए है।

यह एक टिकट घर नजर आ रहे हैं यहां पे काफी लोग नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे कुछ बच्चे ले के खड़े हुए है यहाँ पे पंखे लगे हुए है यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए है यहाँ पे टिकट दे दिए जा रहे है।